बहुत सारा भीड़ भाड़ है।

एक ढाबा है ढाबा का सामने आदमी लोग खड़ा हो रहे है।

गेट दिखाई दे रहा है और उसमें लिखा हुआ है थ्री एक्स वन थर्टीफाइव एम डब्लू डिक्रोंग पावर स्टेशन ।

उस तरफ काउंटर में एक माइकी बैठा हुआ है और उसका अपोजिट में एक ब्लू कलर का चित्र है।

सुन्दर सा रूम है रेस्टोरेंट और आदमी लोग बहुत सारा बैठा हुआ है।

लाउंज बार रेस्टोरेंट है और कुछ चम्मच और इसका सर्किल में ड्रिंक साइन हुआ है और सीढ़ी में एक लाइट लगाया हुआ है।

घास लोग बहोत सारा निकला हुआ दिखाई दे रहा है।

उसमें एक ब्लैक कलर का हैंडपंप है और वहां से पानी निकल रहा है।

और आदमी लोग बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है और गेट का सामने एक बाइट रखा हुआ है और साइड में एक ठेला है।

और ऊपर में एक पोस्टर है।

दीवार में एक ट्राइबल हैबिटेट मुस्लिम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है।

और पकेजेजे चीज रखा हुआ है और बटर्स रखा हुआ है।

के_एफ_सी रेस्टोरेंट है ऊपर में लिखा हुआ है बड़ा से।

साइड में एक वाइट बसता है और उसका पीछे में एक ग्रीन बाल्टिंग है।

मोमो मैजिक कैफे दिखाई दे रहा है येलो लाइट से लिख के--